पोस्टर भी लगा हुआ है बिसलेरी की बोतल रखी हुई है ऊपर छत पे पेंट हो रहा है।

कुछ सीमेंट की टीन हैं दो स्कूटी खड़ी हुई हैं दो बाइक खड़ी हुई हैं चार बंदे दिख रहे हैं।

ऊपर लोहे का सारा सामान है। जलियाँ है पीले कलर की टंकी भी बनी हुई है। वाइट कलर के --

ट्रक हैं उसपे पेंट हो रहा विंडोज है ब्लॉक ब्लैक कलर की--

फूल माला येलो कलर की येलो कलर की साड़ी पहन के एक लेडीज खड़ी हुई है एक लड़का खड़ा हुआ है।

कुछ पेड़ पौधे भी हैं नीचे घास भी है कुछ--

प्लाट है बुलडोजर खड़ी हुई है।

और बच्चे योगासन में है किसी ने रेड कलर --

कुछ परफ्यूम हैं कोई ब्लैक है कोई पिंक --

खुला आसमान है पानी बहुत अच्छा साफ पानी है।

एक पिक्चर है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है।

उस पार्क में ग्रीन कलर के पेड़ पौधे भी है एक तरफ सूखा हुआ पेड़ भी ऊपर खुला आसमान भी है।